उसके हाथ में घड़ी है।

साइड में पौधे नजर आ रहे हैं।

एक पीले कलर का घर नजर आ रहा है।

और टेक्टर का रंग है लाल।

यहां पर दो तीन ताये रखें हुए हैं।

ताए का रंग काला है।

और होटल के अंदर एक व्यक्ति जाते हुए नजर आ रहा है।

इस होटल में खाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं है जैसे रागुल्ले समोसे आलू बड़ा--

इसमें फुल उपजाऊ किए जाते हैं।

इस चित्र को देखकर यह लगता है कि यह एक घूमने की जगह है जिसमें दो लाइट्स लगी हुई हो।

जैसे कि केला का पौधा लगा हुआ है और एक दो खिड़कियां हैं जिसका रंग सफेद है।

यह प्रतीत हो रहा हैं कि यह एक रेलवे स्टेशन है।

इस चित्र से मुझे यह प्रतीत हो रहा है की यह एक स्टेडियम है।

दूर दूर तक आदमी आदमी नजर आ रहे है।

इस चित्र को देखकर यह लगता है कि यह एक बैंक है।

जिसमें दो अंकल एक आंटी बैठी हुई हैं।

भैया मास्क लगा के काम कर रहे हैं।

इस चित्र में मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि यहां दावत चल रही है।

कुर्सियों का रंग सफेद है पत्तल का भी रंग सफेद है।

मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि यह एक पार्किंग है।

और एक सामने बांग्ला पड़ा हुआ है जिसका रंग है वो सफेद।

इसमें चार पांच बोरी रखी हुई है और एक कुर्सी भी नजर आ रहा है जिसका रंग सफेद है ।